यहां छोटे छोटे दो रैक भी रखे हुए हैं जिसके अंदर कुछ सामने भी है।

ये एक खुलासा मैदान है जहां पे कुछ औरतें जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक ब्लू कलर का स्टूल भी रखा हुआ है।

बहोत सारे पिलर लगे हुए हैं।

पत्थल पर एक आदमी जो खड़ा हुआ है और उसके किनारे में एक दीवाल भी लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।

इसके पीछे पुराना सा दीवार है।

रास्ते के ऊपर पारदर्शी छाया हेतु शेड भी लगा हुआ है।

साथ में लाइट भी लगा हुआ है।

यहां पर कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति एक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं।

यहां पर एक कुर्सी भी रखी हुई है जिसका रंग लाल है।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

यहां पे बहुत सारे आदमी है जो घूम भी रहे हैं।

हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है।

यहां पे सोफा भी लगा हुआ है।

एक कांच का गिलास भी रखा हुआ है।

पास ही एक दुकान है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक किताबों की दुकान या लाइब्रेरी है यहां पर बहोत सारे कुर्सियां भी लगी हुई है।

यह एक पार्क है जिसके सामने एक घर बना हुआ है।

अंदर सोफा भी रखा हुआ है और कुछ लोहा भी यहां पे रखा हुआ है।

झारखण्ड मंत्रालय भवन में बहुत सारी ऐ_सी भी लगे हुए है।

पास में गाड़ियां भी लगी हुई है और कचरा का डब्बा भी रखा हुआ है।

यह एक सरकारी बिल्डिंग है जिसमें बहोत सारे कार्यालय हैं।

रांची क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी का कार्यालय है।